और रोड है जिस पर दो बाइक खड़ी हुई है।

और सोफा डला है साइड में कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

ये एक रोड की तस्वीर दिखाई दे रही है।

कुछ काले रंग के हैं और कुछ ब्लू और ऑरेंज कलर के है।

और ये बाहर से तस्वीर ली गई है।

यहां पर कुछ औरतें खड़ी है।

और सीधे हाथ की तरफ बहुत सारे आदमी हैं।

इस पर मेनू का बोर्ड लगा हुआ है।

उसका रंग जो है ऑफ व्हाइट है।

जो सफेद रंग में है।

ऊपर लैंप्स दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहोत सारी हरियाली है।

और दूर कही पर बहोत कोहरा है।

और दिन का वक्त है।

ये एक रोड दिखाई दे रहा है।

इसका गेट का रंग काला है।

और बिल्डिंग का रंग ऑफ व्हाइट है।

और बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।

जो सफेद रंग में है।

इस तस्वीर में एक मस्जिद नजर आ रही है।

और लाइटें डली हुई हैं।

और मीनार बने हुए है।

ये एक मैदान की तस्वीर है।

और दूर बच्चे खेल रहे है।

जहां पर बहुत सारी कुर्सियां डली हुई है।

और एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गई है।

और एक कार भी है जो ग्रे रंग की है।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइट नजर आ रही है।

और लकड़ी के फल्ले डले हुए है।

जो मछली बेच रहे हैं।

यहां पर काउंटर पर बहुत सारे कुल्हड़ दिखाई दे रहे हैं।

जो ब्राउन रंग के है।

एक लड़का खड़ा है जिसने काले रंग की जैकेट पहना हुआ है।

और बहुत सारी कारें नजर आ रही है।

जिसका नाम एस एल वी कार केयर है।

एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है।

जहां पर बहुत सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे है।

सीधे हाथ की तरफ बहुत सारी कार खड़ी है।

जो काले रंग में है।

और रोड है जिसके उस तरफ बाइक खड़ी हुई है।